पीछे की तरफ काफी वृक्ष है तथा ऊपर की ओर--

स्वागतम लिखा हुआ है जिसके नीचे लोहे की ग्रिल से बना हुआ--

हरा रंग तथा दोनों तरफ खिड़किया लगाईं हुई है।

दाई तरफ मूर्ति भी नज़र आ रही है और बाई तरफ पीले रंग का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

जिसके पिछे काफी हैलीकाप्टर्स खड़े है तथा पीछे नीले--

काले तथा सफ़ेद रंग के टाइल्स नज़र आ रही है जिसके--

दिखाई दे रहा है आसमान में कोई भी बादल नजर नहीं आ रहा है आसमान साफ़ है।

भूरे रंग और निचे भूरे रंग का फर्स नज़र आ रहा है।

एक दीवार भी अगल-अगल रंगो से बनाई हुई है।

नज़र आ रहा है पत्तो का रंग हरा-भरा है तथा उसके साथ ही कुछ पत्थर भी मौजूद है।

पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है जिसके साथ दो व्यक्ति खड़े है तथा पीछे की तरफ बोर्ड लगाया हुआ है।

ट्रैन के आगे का हिस्सा सफ़ेद तथा पीले तथा नीले रंग का नजर आ रहा है।

सामान है उसके बाई तरफ ही लोहे की सेफ सामान रखने के लिए बनाई हुई हैं।

एक व्यक्ति पौधों में पानी देता हुआ नजर आ रहा है आसपास काफी हरियाली है।

मिट्टी का रंग भी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ आसमान --

एक महिला तथा बच्चा खड़ा है और उसके पीछे की तरफ--

कुछ वृक्ष नज़र आ रहे है तथा उनके निचे की तरफ कला रंग--

तथा ऊपर भी लाइट मौजूद है साथ ही मे लाल--

तथा उसके निचे काफी ज्यादा मोटर साइकिल और दो तीन गाड़िया खड़ी है।